टायरों की दुकान है और यहां पर बहोत सारे कुर्सियां रखे हुए टेबल है। बाहर कार है।

और वहाँ पे बाजू में चार्ट लगे हुआ है बी_ बी_ ए_ बी_ कॉम बी_ डॉट कॉम ऐसा।

यह एक क्लीनिक दिख रहा और ये यहाँ पे कुछ लिखे हुआ है डेंटल ओ_ पी_ डी_ कुछ ऐसा लिखे हुआ है हॉस्पिटल है ये।

और यहाँ पे दो गमले हैं।

और ये बहोत सारे झाड़ा है जमीन पर बैठ के योगा कर रहे ये लोग घास में--

और अलग-अलग कलर के साड़ियां कपड़े पहने हुए लोगों में बहुत सारे झाड़ा है।

और ये दुकान का नाम लिखे हुआ है यहां पर पप्पू जनरल स्टोर बोल के लिखे हुआ है।

और यहाँ पर लिखे हुआ है ईरा फैशन बोल के ऐसा कुछ लिखे हुआ है यहाँ पर।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है बड़ा सा घर है यह और यहाँ पे इस पे कुछ लिखे हुआ भी है।

और यहां पे बहोत सारे सामान हैं अमूल का दूध का डब्बा है रखे हुआ है वहां पे।

यहां पे कुर्सियां रखे हुए हैं और कार है झाड़ा है यहां पर।

और रोड है मेन रोड है वहा पे सड़क है गाड़िया जा री आ री एक ढाबे के जैसा दिख रा है ये --

यहां पे बहोत सारे लोगां नीचे लेटे हुआ हैं और यहां पर एक आदमी खड़े हुआं है।

और यहाँ पे कुर्सियाँ है कुर्सी पे बैठे हुए हैं कौनकी--

एक बॉक्स कार्टून है और यहां पे दवाइयां टेबुल पर रखे हुए। ग्लूकोस सेंड्स वगैर है यहां पर--

यह एक गार्डन है यहाँ पे बच्चे हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं।

छमछम है मैसूर पाक है और दूध पेड़ा वगैरह है गुलाब जामुन हैं।

यहाँ पे बहुत सारी तरकारी है यह तरकारी की दुकान है एक।

यहाँ पे झाड़ा भी है बीच में बहुत सारे झाड़ा हैं।

वो लोग इनके हाथ में क्या तो भी कैंडिला है और इन लोगों के हाथ में मोमबत्ती है।

यह एक मेले की फोटो दिख रही यह एक मेला है मेला लगे हुआ है यहाँ पर।

यह एक ऑफिस दिख रहा और यहाँ दो चेयरा है सामने बैठने के लिए और ऑफिस बॉस की कुर्सी एक है।

गुलदस्ता है और यहाँ पे बॉक्स पे कुछ रखे हुआ है डेक्स पे भी कुछ रखे हुआ है यहाँ पर।

अ पानीपत हाईवे बोल के कुछ लिखे हुआ है यहाँ पर।

पैक करके रखे हुए भी है और यहां पे पुतले में भी है पिन्हाए हुए--

और ये यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग कलर के कपड़े हैं यहाँ पे।

और यहां पे कुछ लिखेवा है एस_के_ओ_डी_ए ऐसा कुछ लिखा हुआ इसके ऊपर--

एंपोरियर और अरमानी ऐसा कुछ लिखा हुआ है यह बोर्ड पे।

ये बकरी है एक बकरी का बच्चा है ये।

और नारियला भी दिख रहे हैं यहाँ पे पीले कलर के फूला हैं।

और यहां पर इंसान है लाइट है और यहां पर बहोत सारे चीजा रखे हुए हैं अलग अलग और यहां पर बोरस वगैरा भी दिख रहा इसमे--

यह एक जिम है यह एक जिम है और यहाँ पे बॉडी बना रहे हैं।

और यहाँ जिम डंबल वगैरह भी हैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखे हुआ है वहाँ पे पोस्टर लगे हुआ है एक मशीना वगैरह है यहाँ पे बहुत सारे।

ये एक ढाबा दिख रहा और यहां पे--

और यहां पे देखिए झाड़ा भी है बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हुए वहां पे।